ये एक दुकान का वीडियो है और उस दुकान में बहोत सारी बुक रखी हुई है अलग अलग विषय की बुके रखी हुई है।

यह एक होटल लग रहा है जिसमें एक कूलर है और होटल दो मंजिल का है पास में ये एक झूला लगा हुआ है जो स्टील का बना हुआ है।

यह फोटो एक दुकान की है और उस दुकान में कुछ लड़कियों के सामान रखे हुए हैं।

ये फोटो एक किसी होटल का लग रहा है जिसमें दो व्यक्ति काउंटर पर खड़े हैं और पास में ही उसके डस्टबिन रखा हुआ है।

और मंदिर में कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और एक चौक बना हुआ है जिसमें किसी देवता की--

कुछ बुक और एक टेबल रखी हुई है टेबल के पास में ब्लैक कलर की एक कुर्सी रखी हुई है।

पास में ये एक और बड़ा झूला लगा हुआ है।

यह फोटो एक समुद्र या झील की है जिसमें एक लकड़ी की बोट है उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

बहुत सारे पेड़ दिखाई दे हैं दे रहे हैं।

यह फोटो एक ऊंट की है जिस ऊंट की प्रतिमा बनाई हुई है उसके ऊपर एक आदमी बैठा है।

जो किसी काम के लिए यहां आया है और यहां पर स्टेल की चार कुर्सियां रखी हुई है।

और दो ए_सी लगाई हुई है और ए_सी के पास में कुछ कूड़ा या कुछ कीमती सामान रखा हुआ है ये मन बिल्डिंग तीन मंजिल है।

और उस कंटेनर के पास एक स्ट्रीट का ब्रिज भी बना हुआ है।

यह फोटो एक स्टोर की है जिसमें ये स्टोर बुक का है।